ये ही कोई बहोत बड़ी पुरानी सी जगह है जहां पर बहोत सारी जगह है और ये सीमेंट की बनी हुई है।

सफेद से लिखा हुआ है।

येह कोई पहाड़ की जगह है जहां पर बहोत सारे पत्थर हैं और बीच में एक छोटी सी जगह बनी हुई है।

डायरी के ऊपर रखी हुई है सामने दो से तीन कागज पड़े है एक छोटा मोबाइल लगा हुआ है और पीछे एक फोटो लगी है।

ये बीच में लगा हुआ है बिल्कुल और साइड में बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

जहां पर बहोत सारे रूम बने हुए हैं उनके दरवाज़े दिख रहे हैं।

हिंदी में पठानकोट और इंग्लिश में लिखा है--

यह एक पेट्रोल पंप की फोटो है जहां पर ऊपर एक बहोत बड़ी छत लगी हैं।

शीशे के अंदर एक दुकान सी बनी है जिसमें--

यहां पर एक गेट लगा हुआ है ये गेट रेड और ये व्हाइट रंग का बना है।

साइड में एक बॉक्स है जो काले रंग का हैं साइडोमें में लाल गोल्डन रंग का कुछ बना हुआ है एक बैग भी रखा है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन संकल्पना केंद्रीय विद्यालय नंबर वन --

बड़ा बल्ब है जो पीले रंग की रोशनी दे रहा है सामने एक लड़का है जो अपनी फोटो खींच रहा है हाथ में फोन हैं--